सामने मुझे एक एल_इ_डी बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और सामने मुझे बड़े पेड़ और लाल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

सामने मुझे एक फिसल पट्टी नजर आ रही है।

सामने मुझे कुछ स्कूल बस खड़ी हुई नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर सामने एक सड़क दिखाई दे रही हैं।

सामने बोर्ड पर मुझे स्टार दा ढाबा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग की छत मुझे नीले रंग की दिखाई दे रही हैं।

सामने मुझे एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और सामने मुझे बोर्ड पर वेलकम लिखा हुआ नजर आ--

मुझे कुछ टेबल और कुछ कुर्सियां लगी हुई नजर--

मुझे इस फोटो पर एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही हैं।

सामने नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर--